नदी में उम्म पानी भी पर्याप्त हैं जो काफी दूर-दूर तक फैला दिख रहा है दोनों किनारे के बीच की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है।